वहां पे पिंक --

और नीचे जमीन भी दिखाई दे अहि है।

पेपर की मशीनें भी रखी हुई हैं और बोहत सारे खंभे और लाइटें दिखाई दे --

यहाँ पे एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें --

ये एक जिसका कलर ग्रीन है और दिखाई दे रहा है। यहां पे कुछ चेयरे भी रखी हुई हैं। कुछ गमले भी रखे हुए दिखाई --

यहां पे ये बहोत सारी फूलों की मालाएं दिखाई दे रही हैं। इनका कलर येलो और रेड --

एक लोहे का गेट टाइप का भी दिखाई दे रहा है और यहां --

यहां पे कुछ पोस्टर वगैरा भी पड़े हुए हैं। यहाँ पे --

वहाँ पे एक जेसीबी खड़ी हुई दिखाई दे रही है और कुछ खम्भे वगैरा भी पड़े हुए --

कुछ खम्भे वगैरा भी दिखाई दे रहे हैं और रोड भी बना हुआ ऊपर आसमान दिखाई दे रहा।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

और उसमें एक मूर्ति रखी हुई है जो कि एक --

गुलाब कमल के फूल पे बैठे हैं जिसका कलर येलो है और यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने ब्लैक कलर का बैग टाँगा --

यहाँ पे बोहोत सारी चट्टान टाइप के दिखाई दे रही है और बोहोत बड़े-बड़े पत्थर भी दिखाई दे रहे --